इस पिक्चर में देख रहे है एक माला का दुकान है उ उ उसमें माला का दुकान में बाहर से माल टंगा हुआ है वह माला वाइट कलर में है।

इस पिक्चर में देख रहे है एक सड़क है वहां पे बस स्टैंड भी है बहुत सारे बस भी लगा हुआ है ऑटो भी हैं।

इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक होटल है होटल में बहोत सारे आदमी है।

इस पिक्चर में देख रहे है कि यहां पे बहुत सारे--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

इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बहुत बरा मशीन है और किरान से उसको उठा रहा है यहां पे दो आदमी भी है एक ऊपर चरा हुआ है एक नीचे है।

और इसमें घास सभी बहोत सारे हैं और एक व्हाइट कलर --

उम् बल्ब लगा हुआ है जो पीले कलर --

इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बैंक है।

इस पिक्चर में देख रहे हैं की एक एयरटेल मोबाइल का दुकान है इसमें सीसा का गेट लगा हुआ है और उसके अंदर बहोत सारे आदमी भी है।

बहोत अच्छे घर है और उसमें ग्रिल भी लगा हुआ है छत पे एक आदमी है जो व्हाइट कलर के ड्रेस पेहने है।

व्हाइट ड्रेस में है और उस दुकान में बल्ब भी जल रहा है।

इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक सड़क हैं सड़क पे एक साइकल से आ रहे हैं।

और बेसिन भी लगा हुआ है।

इस पिक्चर में हम देख रहे है कि यहाँ पे फोर लाइन अम्म रोड है बहुत सा सारे गाड़ी सब भी जा रहे हैं ट्रक भी जा रहे हैं।

इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक मोबाइल का दुकान है और वह लड़का इसमे बहोत सारे सामान भी है।